इस स्कूल में हमेश आए दिन संस्कृत कार्यक्रम होते रहती है।

फर्नीचर की दुकान है यहां पे काफी लकड़ी के सामान मिलते हैं।

इस टाइम से लोग सिंचाई का काम करते हैं।

यह एक मंदिर है और इसे काफी अच्छा सजाया गया है।